ये कार्यालय है जो कार्यालय हैं ना जो आई-आई आई.टी.आई । आई.टी.आई. एक कोर्स है जो आई.टी.आई. करने के बाद टेक्निकल काम होता है। ये मंडनपुर गया मे है जो कि गया शहर में ही है।

यहां पे एस.पी.र. पार्ट्स लिखा हुआ है। हमारे यहां हर तरह का ऑटो इलेक्ट्रिक स्पेर पार्ट्स एण्ड ऐसे सभी रहते हैं यहाँ पे। मे मोबाइल नंबर दिया है।

यहाँ पे डेकोरैशन भी बोहोत अच्छा है और यहाँ पे सब कुछ फिनिशिंग अच्छा होती है और बोहोत ही लूकिंग यहाँ पे एक ये कुर्सी बोहोत ही अच्छा है। यहां खाना भी अच्छा मिलता है।

आप मंदिर में आकर पूजा कर सकते हैं और इस मंदिर में जो भी आते है उनकी मनोकामना पूर्ण होती है।

ये मंदिर में जो देखा हुआ है गंगा महासती श्री दरबार --